चित्र से पेंटिंग करता है ये बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने मे बहुत सुंदर है और व्हाइट कलर का है।

देखिए यहां बच्चे लोग कुछ खिलौने बनाए हैं देखने मे बहुत --